ये जो आपको इमेज दिख रही है इसके अन्दर काफी सारे बेंचेस हैं। एक बेंच इसके अन्दर सबसे डिफरेंट है।

एक ग्रीन कलर की दो बोर्ड लगी हैं। एक व्हाइट बोर्ड है। एक ब्लैक बोर्ड है।

इसके साइड मे भी दो एक और पोस्टर रखा है डी कार्ड्स नीली कलर का पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है साइड में बहुत सारे ईटे --

एक मोटरबाइक खड़ी हुई है। जिसके ऊपर सीट नहीं लगी और एक गेट है। जिसके अंदर एक सिलिंडर दिख रहा है। साइड में एक बाल्टी रखी है और थोड़ा बाइक के साइड में थोड़ा सा कबाड़ा रखा है।

सामने टीवी में केटलॉग फ़ोटो दिख रहा है। साइड में कुर्ते रखे हैं। इधर भी कुर्ते टंगे हैं। बीच में डमी है। दो लेडिज जो कि कपड़े पहनी हुई हैं। एक बैठी है एक खड़ी है।

एक दुकान है जहाँ बहुत सारा सामान रखा है। थोड़ा बहुत खाने की चीज़े है रखी हुई है थोड़ी बहुत दवाईयां रखी हैं और नीचे की तरफ भी बहुत सारी चीज़े रखी हैं। साइड में पैकेट रखे हैं।

यहाँ एक गाय खड़ी है काले और सफेद रंग की इसकी---